एक टंकी दिख रही है।

यहां पर कुछ गमले हैं लाल कलर के।

यहां पर एक छत पर कुछ लेडिस एक्सरसाइज कर रही है।

पीछे कुछ मैट रखे हुए हैं रंग बिरंगे।

रेड कलर की बस खड़ी है।

यहां पर एक बैलून है।

सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है।

कुछ बैडमिंटन टंग रही हैं।

यहां पर स्कूल यहां पर एक दो कोठे से हैं और यहां पर पेड़ से हैं बराब्बर में यहां पर --

यहां पर एक डी_जे वाला है।

डी_जे के ऊपर एक लगे हुए--

रंग बिरंगे बच्चे हैं यहां पर।

कुछ पट्टी रखी हुई है कुछ तख्ते के रखे हुए हैं।

एक आदमी की पेंटिंग है।

यहां पर एक रूम है।

नीचे कुछ पट्टी हो रही है जुराब पहन रखी है।

पीछे ये पत्थरों से दीवार बनी हुई है।

जिसमे रंग बिरंगे सूट है हरे पीले लाल।

कुछ बोर्ड है यहां पर।

दुकान में कुछ यहां पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है टुडे स्पेशल

चेयर है कुछ टेबल है यहां पर।

यहां पर एक दुकान है।

ये कुछ बोर्ड पर नाम लिखा हुआ--

ओ_पी_डी लिख रहा है नंबर वन लिखा है कमरे पर।

मशीन है कुछ बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई हैं।

कुछ आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

बोट है बोट में मछ्ली पकड़ने का जाल भी हैं।

उपर एक रूम है जिसमें कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यहां पर मैट रखे हुए हैं रंग बिरंगे हैं ब्लू व्हाइट --

गुड्डे हैं। बैट -बॉल हैं। कुछ जूते चप्पल रखी हुई हैं। दो तीन कट्टे हैं।

एक कुत्ता सो रहा है।

पीले लाल कलर की है।

एक बाल काट रहा है।

इसके गले में एक चैन --

कुछ आदमियो ने टोपी पहन रखी है कुछ आदमी ने गेर रखे हैं गले में --

यहां पर एक लड़के ने जिम की है।

पैंट पहनी है बेल्ट है।

पीछे बहोत सी जिम है।

पीछे शीशे लगे हुए हैं।

यहां पर एक दुकान है।

एक ए_टी_एम बाहर चप्पल निकल रही है।

जंगल में कुछ हिरण है।

बाहर दुकानें हैं बाहर मोटरसाइकिल का टायर दिख रहा है।

नीचे में बैडमिंटन रखे हुए हैं।

यहां पर एक घर है।

पीछे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे।

कुछ गमले रखे हुए हैं कुछ बाइक वाले तेल गिरवा रहे हैं।

कुछ यहां पर मिक्सी मोक्सि रखी हुई है।

कुछ यहां पे ढोल वाले खड़े है ढोल बजा रहे है एक आदमी के हाथे में माला है।

ट्रैक्टर बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं एक लड़का है दो तीन बाइक खड़ी है।

पीछे पेड़ पौधे से दिख रहे हैं।

कुछ यहां पर रखी हुई है तसले रखे हुए हैं।

यहां पर एक इ रिक्शा है।